तालाब के पास दो बाइक दिख रही है बाइक के ऊपर हेलमेट दिख रहा है।

और कुछ पेपर के पड़ी के लटकते हुए दिख रहे हैं।

दो बाइक पड़े हैं एक एक्टिवा के ऊपर दो इंसान बैठे हैं बाहर कुर्सी दिखाई दे रही है।